पहाड़ है जिस पहाड़ में नीचे साइड गुफ़ा बना हुआ है।

एक आदमी घुसा हुआ है और बाहर गाड़ियां खड़ी हुई है एक दो आदमी खड़ उसके बगल से दो आदमी खड़े है एक बगल से मैथमेटिक्स क्लास है जिसके गेट के बाहर एक आदमी कुर्सी पे --

एक बड़ा सा तालाब है जिस तालाब मे पानी भर हुआ है और सीढ़ी बनी हुई है जिस सीढ़ी मे एक लड़का जो पानी को देख रहा है खड़ा है सामने अगल-बगल पेड़-पौधे जो दिख रहे है हरे है बादल सफेद है।

सामने बस खड़ी हुई है सफ़ेद कलर की और उसके बगल से कुछ लड़के आदमियों जो चल रहे हैं साइकिल खड़ी हुई है अगल-बगल दुकानें बनी हुई गेराज बना हुआ है।

परिवार कल्यान संस्था है संस्थान पटना है जिस संस्थान के अंदर बहुत सारी भिड़े भाड़ी लगी हुई है।

पंखे लगे हुए है परदे लगे हुए है और कुछ लड़के लोग सोफ़ा मे बैठे हुए है एक लड़का सामने खड़ा है एक लड़का जो कुर्सी मे बैठा है बाल कट करा--